इस फोटो मे मुझे पेड़ दिखा--

इस फोटो में मुझे मशीन दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे लाइट दिखाई दे र--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

इस फोटो मे मुझे टेबल कुर्सी दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो मुझे कुछ दुकाने दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे खनिज भवन दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे जिम दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे कंबल की दुकान दिखाई दे रही है।